और एक पीला कलर का बल्ब है यहां एक बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक बहुत बड़ा मैदान है मैदान में बहुत सारे घास है।

घास का रंग हरा है और बहोत सारे पेड़ है।

टाइल्स का रंग उजला हैं और टाइल्स के ऊपर ये कुछ सोफे है।

नीचे ईंट भी है ईटा के बगल में एक--

सामने एक बड़ा जंगल है। यहां पर दो हंस है।

मॉल का कलर उजला और नीला हैं यहां एक चटाई बिछाई गयी हैं।

बाइक पर कुछ आदमी भी बैठे हुए है बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा लाइट है।

सामने एक घर है घर का कलर लाल है।

जो उजला कलर का है और एक पत्ता भी है।

और यहां एक मशीन है और उधर बहोत सारे छोटे पौधे हैं ऊपर आसमान है आसमान का कलर नीला है।

सामने एक बड़ा बिल्डिंग है नीचे में एक बुलू और उजाला कलर का दरी भी बिछाया गया है।

यहां पर बहोत सारे लोग हैं लोग ऊपर टोपी पहने हुए हैं।